यह एक मशीन सी लग रही है।

तीखा ब्लेड भी नजर आ रहा है साइड में एक टेबल भी--

गेट छोटे छोटे शीशो के द्वारा निर्मित किया गया है।

साइडो में कुछ तस्वीरें भी है जिन पर हाथ चढ़े हुए है कुछ सेब है अनार है।

जो गेट सरियोंके द्वारा निर्मित हैं।

एक बिजली का खंबा भी दिखाई दे रहा हैं।

इसमें एक लड़की काफी सारे जुड़े बनाए हुए है।

और उसमें पीने लगाई हुई हैं।

इसके सेंटर में ब्लू कलर का कुछ रखा भी हुआ है।

जिसमें येलो कलर के पंखे लगे हुए हैं।

दे रहे हैं जिसमें से कुछ गर्ल्स हैं।

रेड और व्हाइट कलर के हैं।

यह एक ऑफिस लग रहा है।

कुछ व्हीकल्स भी नजर आ रहे हैं।

डी_जे का काफी सुंदर व्यवस्था की गई है।

दे रही है कुछ चार्ट पेपर के ऊपर कर रहे हैं और कुछ विदाउट चार्ट --

कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं इसका गेट --

जो न्यू ओपनिंग लग रहा है।